और स्पीकर और इसमें एक पियानो भी है।

अंदर बाहर कर रहे हैं और इसके गेट पर कुछ काई लगा हुआ है और अगल-बगल में--

पंडार है जिसमें बहुत सारे बाराती आए हुए हैं और--

ऑफिस है और इसमें बहुत सारे पुलिस कर्मचारी--

इसमें हम इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये एक कंप्यूटर की दुकान है जिसमें अनेक प्रकार के--

अनेक कंपनी के लैपटॉप है जैसे एच_पी है डैल है।

और बहुत केक यही सब मिल रहा है देख के अच्छा लग रहा है।

सुखदेव मुख्यालय इंटरमीडिएट महाविद्यालय और यह--

हाजीपुर में इसको एस_एम कॉलेज भी कहते हैं और बहुत सारे--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

ए_टी_एम से पैसा निकालने के लिए आए हैं और इस ए_टी_एम को कहते हैं योनो एस_बी_आई बैंक --

इस फोटो में देख सकते हैं यह किसी बिल्डिंग का अपार्टमेंट लग रहा है।

इस फोटो में देखने से लग रहा है ये मैक्स मॉल है जिसमें--

लड़की कपड़ा लड़का कपड़ा सबका कपड़ा मिलता है।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

डेट पे आए हैं देख के अच्छा लग रहा है।

यह एक शादी का पिक्चर लग रहा है।

इस फोटो में देख सकते हैं ये किसी खिलौना का--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

जैसे बहुत सारे केक मिलते हैं और बहुत सारे तरह तरह के कॉफी मिलते हैं।

जिसमें ऊपर बहुत सारे पंखे हैं और पूरा हॉल खाली है।

आदमी आ रहे हैं साइकिल से आ रहा है।

क्या एक जिम का फोटो लग रहा है जिससे बहुत सारे अलग अलग तरह के--

और यहाँ देख सकते हैं बहोत-बहोत बड़े-बड़े पत्थर हैं बहोत सब संख्या में है।

ढकना रखा हुआ है जिससे हम लेते हैं और बहुत सारे पिलर हैं।

यहाँ फोटो देख लग रहा है किसी स्कूल का है।

इसमें लग रहा है शादी भी हो सकती है एनिवर्सरी हो सकती है।

इ देखने से लग रहा है कि यह किसी बच्चे का स्कूल है जूनियर इसका नाम जूनियर डी_पी_एस है।

यह फोटो देख के लग रहा है यह किसी साड़ी की बहुत अच्छी दुकान है।

आदमी बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं और दो आदमी इंतजार में है वेटर का--

और वो कुछ देर में बैठेंगे और खाना खाएंगे चले जाएंगे--

इस फोटो में देख के लग रहा है यह किसी मेले का फोटो है।

और नीचे पूरा मैट बिछाए जिससे बच्चों के पैर में गंदा ना लगे--

इस एक जीम है जिसका नाम है गोल्ड जीम --

और दो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का--

और अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा है मरीजों को--

शुरू में हम देख सकते हैं हैं कि यह इसमें पियानो रखा गया है और एक गिटार है।

माहौल बहुत शांत लग रहा है और बहुत सारे पंखा की सुविधा है।

और लाइट की भी सुविधा है और कुर्सी और टेबल का भी सुविधा है।

फोटो है जिसमें एक फूल बेचने वाला फूल बेच रहा है इसमें अन्य प्रकार के फूल है बहुत सारे--

है फूल है अलग अलग तरीके के और नीचे इधर मिट्टी भर के पॉट भी रखा है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं यह चित्र एक ब्यूटी पार्लर का है।

और यह देखने से बहुत ज्यादा लग्जरी लग रहा है और इसमें तीन तीन आदमी बैठे हुए--

कैडवारी डेली मिल्क है बिस्किट है और बहुत सारे केचप है।

और मीटिंग करने के लिए टेबल कुर्सी और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है।

वो भी डॉक्टर हॉस्पिटल का इक्विमेंट --

और नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पौधा है।

और यहाँ बहुत सारे बच्चे को डांस सिखाया जा रहा है और बहुत सारे--

और हर एक गद्दे पे दो-दो तीन-तीन ऐसे करके बैठे हैं देखने में अच्छा लग रहा है अच्छा माहौल लग रहा --

यह एक बहुत बड़े लाइब्रेरी का फोटो है।

एक आदमी पैसा निकाल के जा रहा है और एक आदमी पैसा निकाल रहा है।

और प्रोफेशनल लग रहे हैं यह सब काम करने में--